और इसकी खासियत जो है ये डोरमेट वगैरह जो बिछे हुए हैं। कारपेट्स वगैरह जोकि बहोत सुंदर लग रहे हैं।

ये कार्यालय नगर पंचायत के लिए ही काम में आता है जिसमें कि नगर सा सारा बेवरा दिया जाता है। नगर की सारे रख रखा यो के बारे में पता चलता है कि कीस तरीके से मेन्टेन किया जाता है।

बोहोत अच्छे तरीके से समानित किया जा रहा है। बच्चो को प्राउड फील हुआ।